meet the gimp में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा बनाया गया है
gimp इमेजेस में जोड़तोड़ करने का एक बहुत प्रभावशाली program है
इस पहले tutorial में मैं आपको gimp और इसकी विशेषताओं का एक छोटा सा भ्रमण कराना चाहती हूँ
मैं आपको संक्षेप में बताउंगी कि web के लिए image कैसे तैयार करते हैं
मैं भविष्य के tutorials में सविस्तार स्पष्टीकरण दूंगी
image को खोलने के लिए मैं tool box में image को box खींचूँगी और छोड़ूँगी
और यह यहाँ है
इस image पर एक निगाह डालते हैं
मैं इस image को web के लिए तैयार करुँगी
अब देखते हैं कि मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ
पहले image झुकी हुई है; इसलिए मुझे इसे थोड़ा सा घुमाना है
फिर इस भाग को हटाने के लिए मैं इसे crop करना चाहती हूँआदमी का पिछला भाग
तीसरी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो है ज़्यादा रंग और contrast लाना
मैं image को resize भी करना चाहती हूँ क्योंकि अब यह लगभग 4000 pixels चौड़ी है जो कुछ ज़्यादा ही है
और फिर मैं इसे sharpen करना चाहती हूँ और इसे jpeg image की तरह सेव करना चाहती हूँ
अब rotating के साथ शुरू करते हैं
मैं image के उस भाग में zoom करती you जहाँ सबसे ज़्यादा स्पष्ट है कि image झुकी हुई है आप इसे यहाँ सेव कर सकते हैं
बहरहाल आप space दबाकर और by cursor घुमाकर image में चारों तरफ घूम सकते हैं
और अब मैं यहाँ क्लिक करके rotate tool चुनती choose
rotate tool में default रूप से कुछ विकल्प set हैं उन values के लिए जो graphical कार्य के लिए उचित हैं और photographic कार्य के लिए नहीं
अतः यहाँ direction normal forward पर set है लेकिन मैं इसे corrective backward पर set करुँगी
मैं जाँचती हूँ यदि मेरे पास उत्तम interpolation है अतः वह अच्छा है
और preview में मैं image के बजाय grid चुनती choose
मैं slider को घुमाकर grid लाइनों की संख्या बढ़ाती you आप इसे जल्द ही देखेंगे
मैं image पर click करके एक grid प्राप्त करुँगी जो image के ऊपर रहेगा
यह grid सीधा है
और मैं इसे घुमा सकती हूँ और gimp corrective mode में उसी दिशा में image को घुमाएगा जिससे grid दोबारा सीधा हो जाये
अब मैं दिखाती हूँ मैं grid को इस तरह घुमाऊँगी
मैं निश्चित करने के लिए image के अन्य भागों को जांचूंगी
मुझे अच्छा दिखता है
अब मैं rotate button पर click करुँगी
यह कुछ समय mega चूँकि image लगभग 10 megapixels है
और यह हो गया है image घूम चुकी है
अब पूरी picture को देखते हैं shift + ctrl + e image में वापस let है
अगली step cropping है
मैं यहाँ क्लिक करके crop tool चुनती हूँ
मैं image का aspect ratio 3:2 रखना चाहती हूँ
इसके लिए मैं यहाँ fixed aspect ratio पर क्लिक करती हूँ और 3:2 type करती हूँ
box से बाहर निकलने के लिए box क्लिक करती हूँ
और अब मैं cropping शुरू करती हूँ
मैं यहाँ इस आदमी के पैर सम्मिलित करना चाहती हूँ लेकिन image का यह भाग बाहर निकालना चाहती हूँ
अतः मैं यहाँ इस point से शुरू करती हूँ और mouse का बायाँ button दबाकर क्षेत्र को चुनने के लिए बायीं तरफ upward खींचती हूँ
ध्यान दें कि aspect ratio अचर है
और अब मुझे निशिचित करना है कि कितनी दूर तक खींचना है
मुझे लगता है यह बिल्कुल अच्छा है
अब borders को जांचते हैं
हमने यह भाग निकल दिया है एक व्यक्ति यहाँ बैठा है
मुझे लगता है यहाँ उस व्यक्ति को picture में रहने के लिए काफी जगह है
अतः मैं इसे उसी तरह छोड़ दूंगी क्योंकि यह अच्छा लगता है
यहाँ ऊपर खिड़कियाँ हैं
उनको खिड़कियों की तरह देखने के लिए image में वह काफ़ी हैं
लेकिन मुझे लगता है यहाँ पैरों पर चारों तरफ ज़्यादा जगह नहीं है
अतः मैं बस image पर click करुँगी और इसे थोड़ा so नीचे खींचूँगी
मुझे लगता है अब यह अच्छा है
लेकिन अब यहाँ बहुत अधिक खिड़कियाँ नहीं दिखती हैं और यहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो border के बहुत निकट है
अतः अब image को थोड़ा so बड़ा बनाना है
यहाँ हमें एक परेशानी होने वाली है शायद आप इसे देख सकते हैं
यह rotation के समय हुआ
यहाँ एक छोटा सा भाग है जो अब पारदर्शी है
मैं उसे सम्मिलित नहीं करना चाहती हूँ
अतः crop tool पर वापस जाते हैं
मैं यहाँ थोड़ी ज़्यादा जगह चाहती हूँ; अतः मैं इसे ऊपर खींचूँगी
ज़्यादा दूर नहीं
मुझे लगता है यह बिल्कुल अच्छा है
अब बस image पर click करती हूँ और यहाँ हमारे पास cropped की हुई और rotated की हुई image है
shift + ctrl + e हमें पूरे view पर वापस लाता है
अगली step में मैं थोड़ा सा रंग और contrast को बढ़ाना चाहती हूँ
यहाँ बहुत से तरीके हैं मैं color levels प्रयोग कर सकती थीयह यहाँ है curves और कुछ sliders
लेकिन मैं layers के साथ यह करने का प्रयास करुँगी
मैं सिर्फ यहाँ इस layer की एक copy बनाती हूँ
और layers mode को overlay से बदलती हूँ
और आप देख सकते हैं कि यह बहुत मज़बूत प्रभाव है मैं इसे उतना ज़्यादा नहीं चाहती हूँ
अतः मैं opacity slider को एक value तक थोड़ा कम करती हूँ जहाँ मुझे लगता है यह अच्छा लग रहा है
शायद थोड़ा ज़्यादा
ठीक है मुझे लगता है यह ज़्यादा अच्छा है
मैं उसे हमेशा बदल सकती हूँ जब तक कि मैं channel की सूची पर जाने के लिए यहाँ mouse पर right click न कर लूँ और flatten image या merge visible layers न चुन लूँ
फिर सारे बदलाव स्थायी हो जाते हैं
यह छोड़कर कि जब मैं यहाँ history पर जाती हूँ और वापस जाती हूँ और history को undo करती हूँ
लेकिन हम वह बाद में cover करेंगे
अगली step है resizing
मैं image menu पर click करती हूँ और scale image विकल्प पर click करती हूँ
यहाँ मैं बस 800 pixels type करुँगी
और मुझे स्वतः ही height के लिए value मिल जाती है
जब मैं यहाँ इस link को unlock करती हूँ तो मैं इसे रीसाइज करते समय image को बदल सकती थी
interpolation मुझे लगता है मैं cubic चुनूँगी मैंने पाया कि यहाँ सबसे उच्चतम layer ईंट की इमारतों के साथ कुछ कला का प्रभाव देती है यह बहुत अजीब है और मुझे यह जाँचना ही होगा
अब scale पर click करती हूँ
और हम परिणाम को देखते हैं
shift + ctrl + e हमें पूरी image को वापस देता है
और जब 1 दबाती हूँ तो मुझे 100% zoom मिलता है
अब हम image के चारों तरफ देखते हैं कि क्या image में वास्तव में परेशान करने या ध्यान हटाने वाली कोई चीज़ है लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा हुआ है
अगली step sharpening है
camera lens बिल्कुल अच्छा है और camera camera भी लेकिन हमने image में जोड़तोड़ किये हैं अतः यह थोड़ी my शार्प की जानी है
मैं filters चुनूँगी
और enhance पर click करती हूँ और यहाँ sharpening है मैं unsharp mask भी प्रयोग कर सकती हूँ जोकि बहुत प्रभावशाली sharpening tool है लेकिन अभी के लिए sharpening काफ़ी है
यह tool tool रूप से सिर्फ एक विकल्प रखता है जो sharpness slider है यह समायोजित किया जा सकता है और यह इस image के लिए काफ़ी है
यह बिना शार्प की हुई image है और जब मैं इस slider को खींचती you ज़्यादा से ज़्यादा शार्प की हुई image मिलती है आपको एक बहुत मज़ेदार प्रभाव मिलता है अगर आप इसे ज़्यादा दूर तक खींचते हैं
मुझे लगता है इस image के लिए यह value अच्छी है
अब बाल ज़्यादा साफ़ दिखते हैं लेकिन यहाँ आप कुछ मिश्रण या विकृति देख सकते हैं
अतः हम इसे थोड़ा नीचे खींचेंगे और यह बेहतर है
मैं image में किसी विकृति के बजाय थोड़ा सा बदलाव लाना चाहती हूँ
ये इस बात का सबूत है कि आपने इस image में जोड़तोड़ किये हैं
अतः अब परिणाम को देखते हैं
यह पूर्ण रूप से अच्छा दिखता है
और अब आखिरी step है image को सेव करना
मैं file पर जाती हूँ और save as पर click करती हूँ और as मूल फाइल के extension को tif से jpg में बदलती हूँ
और save button पर click करती हूँ
मुझे एक चेतावनी मिलती है कि jpeg विविध layers के साथ images का नियंत्रण नहीं कर सकता है ठीक है अतः हमें उन्हें export करना है
मुझे लगता है इस image के लिए 85% एक अच्छी मानक value है
अतः यहाँ मैंने इस image को jpeg image की तरह so कर लिया है
आप इसे पूरे screen पर देख सकते हैं
this इतना ही meet the gimp का पहला tutorial भविष्य के tutorials में मैं निम्न विषय cover करुँगी जैसे gimp को set कैसे करते हैं कैसे बनाते और बदलते हैं आदि और tools और बहुत अधिक
अगर आप टिप्पणी भेजना चाहते हैं तो कृपया info @meetthegimp org पर लिखें
अधिक जानकारी
मैं आपसे सुनना चाहती हूँ मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगा मैं क्या अच्छा कर सकती थी भविष्य में आप क्या देखना चाहते हैं